कुछ पौधे नजर आ रहे हैं यहाँ पर साइकिल दिखाई दे रही है अंदर कुछ लोग नजर आ रहे हैं अंदर काफी लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं पीछे कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं पेड़ काफी बड़े दिख रहे हैं।

यहाँ एक किला नजर आ रहा है यहाँ किले की बाउन्ड्री नजर आ रही है यहाँ पे किले की बाउन्ड्री टूटी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे काफी सारे पाइप नजर आ रहे है यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ घास नजर आ रही है पीछे एक टावर नजर आ रहा है टावर काफी बड़ा दिखाई दे--